यह एक एस.बी.आई. बैंक है और ठीक उसके बगल में ही एस.बी.आई. बैंक ए.टी.एम. है। इस बैंक --

कैमरा और एक वाय वायलिन है जो कि बहोत पुराना है।

यह एक एयरटेल सर्विस सेंटर है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के मेन मेन ब्रांच में से एक है।